यहाँ कोई दवाई का काम हो रहा है।

यहां सीमेंट गिट्टी छड़ से काम करते नजर आ रहे ।

इस टोटो के साथ डबल बैटरी मिलते हैं जो सौ किलोमीटर --

यह एक गैरेज है। यह गैरेज बहुत ही बड़े हैं।

यहाँ बहोत ही सुविधाएं होती है यहाँ चिट्ठी आता-जाता है।

कुछ मैकेनिक माथे में हेलमेट ले के सामान को पैक कर रहें हैं।

मै है यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बने --

इस होटल में खाने की भी सुविधाएं है।